एमे एगो महिला खड़ा बारी दुकान के अन्दर बहुत प्रकार के बिस्कुट आ ठंडा-वंडा भी रखल बा एगो कोका कोला कंपनी के लाल रंग के फ्रिज भी लागल बा दुकान में ।

इ एगो कपडा के दुकान के तस्बीर बा इ कपड़ा के दुकान के नाम बा महाराजा गारेंमेंट्स इ पर लीखल बा स्पेशलिस्ट ए तू जेड रेडिमेंट गारेंमेंट्स बहुत तरह के कपड़ा आ स्वीटर बाहर लटकावल बा |

कुछ बच्चा के कपड़ा भी फ्रोक नेहरु जैकेट इ सब लटकावल बा एमे एगो काउंटर बा काउंटर पर एगो पानी के बोतल धइल बा।

इ जगलाल चौधरी कॉलेज के फोटो बा इ जगलाल चौधरी कॉलेज छपरा जिला में पड़ेला।

इ झूला कूदे वाला झूला ह इ हरा पीला उजला काला रंग के ब बा एम्मे हवा भरल बा जोवना में के काला रंग के एगो मोटर नियर नाचेलइ।

एकर अन्दर से देवाल ब्लू रंग के बा ओकर प्रिज्म चैंपियन सीमेंट के प्रचार करल बा दुगो स्टूल और एगो कुर्सी रखल बा बहुत सारा सीमेंट के बोरा भी रखल बा एमे यहाँ घर बनावे के सामान मिलेला।